बिल्डिंग चमक रही है एक घर चमक रहा है काफी सुंदर।

पेड़ झाल ओ पेड़ पौधे भी चमक रहे हैं।

और सामने काफी सारी ऑटो खड़ी हुई है।

कटिंग वगैरा करते हैं इस इक्सार वगैरा करते हैं इसको नीचे कट्टा रखा है इसमें कुछ सामान रखा है।

एक आंटी जी मास्क लगा कर आ रही है।

और एक बंदा भी खड़ा हुआ है यहां पर छोटा बच्चा सामने एक बंदा अंदर फोन चला रहा है।

झालर सी लगाई हुई है।

ये कोई पहाड़ है यहां पर।

लगे हुए हैं यहां पर पार्क में बने हुए है।

यहां पर पैक कर रहा है यह पेटी में से कुछ निकाल रहा है।

इधर भीड़ भी लगी हुई है काफी सारी।

और यहां पर फैन लगा हुआ है एक।

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं लाइटिंग कर रखी है झलर लपेट रखी है चारों साइड ।

पीछे एक बॉडी गार्ड टाइप आ रहा है ब्लैक कपड़ों में जैसे--

ऊपर ए_सी भी लगी हुई है फैन भी लगे है कुछ सामने।

और इधर एक साइकल सी बनी हुई है।

और पीछे डेकोरेशन में दिल बने हुए हैं।